बहुत सारा बहुत बड़ा गार्डन है। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं जो की पिकनिक मनाए मनाने आए होंगे। यहाँ पे बहुत सारे लड़का-लड़की भी है गार्डन में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है गार्डन ।

यहाँ घूमने से अच्छा होगा। यहाँ पे छुट्टी में लोग घूमने आते हैं।